एक कोर्ट दिख रहा है यह तस्वीर के गेट पे--

एक चेयर दिख रहा है।

और बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं।

ये तस्वीर में बहोत सारे डॉक्टर दिख रहे हैं कुछ डॉक्टर बैठे दिख रहे हैं।

एक ए_सी दिख रहा हैए_सी-- --

मकान काफी बड़ा दिख रहा है।

यहाँ बहुत कपड़ा दिख रहा है।

एक औरत दिख रही है।

बहुत सारा फल बिक रहा है।

कुछ छोटे बच्चे दिख रहे हैं रास्ते पे--

एक टेलीफोन दिख रहा है।

अलमारी पे बहुत सारी चीज सजा के रखी हुई है।

ऊपर लाइट जल रहा है।

सड़क पे झांकी निकाली जा रही है।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

सामने सड़क दिख रहा है सड़क काफी लंबा चौड़ा है।

यह तस्वीर में काफी हरा भरा दृश्य दिख रहा है।

ये तस्वीर में एक बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है।

अलमारी लाल रंग का है एक लाइट जल रहा है।

कुछ औरतें भी दिख रही हैं।

बहुत सारा बाइक दिख रहा है।

बगल में एक्सिस बैंक का ए_टी_एम दिख रहा है।

ये तस्वीर में एक दुकान दिख रहा है दुकान में बहुत कपड़ा दिख रहा है।

खड़ा आदमी नीला टी शर्ट पहना है आदमी फोन पे बात कर रहा है।

पीछे काफी बड़ा पेड़ दिख रहा है।

एक बस का सीट दिख रहा है।